स्वागत के लिए बैठे हैं किसी का स्वागत हो रहा हैं और यहाँ पर आदमी हैं दु चार छह छह आठ आठ ठो आदमी है।

ए कुछ ये हैं फूल हैं और व्हाइट कलर का ऊपर मे लाइट हैं झालर है पेंट घर का बहुत ही अच्छा है।

बहुत सारे बंदर है आउ पेड़ पॉधे है पार्क है लगता है।

लोहा का तार लगा है व्हाइट कलर का टाइल्स हे रेड कलर का टाइल्स हे अउ सब तरफ अच्छा अच्छा--